आप देख सकते है ये माउंटेन कितना अच्छा है इस माउंटेन पे छोटे-छोटे प्लांट्स है ट्रीज और देख सकते है इस ग्राउंड में बहोत सारे --

फ्लोरिंग की गई है शीशे का भी सामान है वहाँ पर वहाँ पर बहुत सारा सामान है एयर कंडीशनर भी है आप देख सकते हैं वहाँ पर लाइटिंग येलो कलर की आ रही है।

बहोत अच्छा शॉप है जहां पर ग्लासेस मैगी सारा अंदर है घड़ियां--

ये अ वॉल के ऊपर नेट लगी हुई है उसी को डेकोरेट किया गया एै ।

ये लोग बैठे हैं ये फ्लो फ्लावर्स देखिए कितने कलर्स के हैं पर्पल ब्लू ब्लैक येलो --

आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा वास्ट एरिया है जहां पर ये लोग बैठे हैं यहां पर ये फॉरेस्ट बनाया गया है ये पीछे से बहोत सारे अहमम--

एक यूनिफॉर्म में हैं बाकी यूनिफॉर्म में नहीं हैं कुछ के स्पोर्ट्स शूज़ लगा के है और ये डैस पे रोने ये ब कैंडल बनाया है।

कम्युनिकेशन सर्विस सेंटर है ये जो वहाँ पर उन ने आ --

स्टॉल भी रखा है ये रेड कलर की स्टेयर्स लगी हुई हैं इसमें इनने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैक --

देशी घी है बहोत सारे आइटम शेल्व्स पे है शुगर है फाइव हंड्रेड ग्राम ।

ये इनको दिखा रहा है और ये बहुत सारे लड़के हैं एक कोप के दो को कैप लगी हुई है बाकी विदाउट कैप है ब्लू कलर की शर्ट लगी हुई है बच्चों को--

देखिए चेयर पे लोग बैठे हुए हैं और इसकी ग्रिल जो हैं वो रस्ट कलर की हैं हमें यहाँ से ये ब्लू कलर का --

ये एक प्लेग्राउंड है बच्चे खेल रहे हैं आप देख सकते हैं इसके पीछे कितने ग्रीनरी है इसके छोटे प्लांट्स ग्रीन --

प्लांट्स लगे हुए हैं और यह ग्रास जो है यह बहुत ही अच्छी दिख रही है और बच्चे फुटबॉल को खेल रहे हैं।

आप देख सकते हैं ये बंदा जिम में हैं जहाँ पर मैटिंग ब्राउन एंड पिंक --

बाइक भी है वहाँ पर कुछ ब्रेक्स भी हैं साइकिल भी लगा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं।

बहोत अच्छी तरीके से सजावट की गई है उधर --

आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग है इनर साइड बिल्डिंग जोकि वाइट वॉल्स लगे हुए तीन फैंस लगे हुए हैं इसमें बेड्स लगे हुए है।

आ स्विच्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं स्विच कितने प्रिटी कलर्ड हैं।